दुकान के अंदर एक काउंटर है काउंटर पर ढेर सारी डिब्बी और तार रखा हुआ है।

इस बिल्डिंग के आगे बहुत सारी मोटरसाइकल और स्कूटी लगी हुई है।

इसकी दीवार पर एक बड़ा सा पोस्टर में सरस्वती मां का फोटो भी लगा--

गेट उसका शीशे का है अंदर एक बेसिन भी लगी हुई है।

कमरे की दीवार पर एक बोर्ड भी बनी हुई--

नीचे में छोटे छोटे शो प्लांट भी लगे हुए हैं।

सभी अलमीरा में बहुत सारी अनेक प्रकार की वस्तुएं रखे गए हैं।

और सारी बिल्डिंग्स का कलर भी अलग अलग है।

के किनारे दुकानें भी लगी हुई हैं।

यहां पर एक व्यक्ति भी खड़ा है।

के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

ऑटो में एक ड्राइवर बैठा हुआ है।

इसकी दीवार पर फ्लावर और तितली का स्टीकर भी चिपका हुआ है।

वहां पर एक फैन भी लटकी हुई है।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

कमरे में बहौत सारी आलमीरा बनी हुई है।

बाउंड्री के बाहर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।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

दूसरे तरफ बहुत सारी डायरी पेन यह सब भी रखा हुआ है।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

इसपे पर्यटन विभाग सुग्गा बांध लिखा हुआ है।

बिल्डिंग की दीवार पर बहोत सारी पोस्ट चिपकी हुई है।

सीढ़ियां के ऊपर एक स्कूटी ब्लू रंग की लगी हुई है।

डोरमेट के बगल में बहोत सारे कंबल भी रखे हुए हैं।

उस सोकेस के ऊपर बड़ी बड़ी डिब्बे भी रखी गई है।

गेट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी केले के पेड़ लगे हुए है।